तस्वीर में सामने एक बिल्डिंग दिखाई दे रहा है जो की येलो पेंटेड है।

सामने एक लंबी सी बोर्ड लगी दिख रही है जिसके ऊपर द हेज़लनट फैक्ट्री बेकरी स्वीट्स लिखा है।

यहां पर शो के पेड़ पौधे लगाए गए हैं।

यहां पर काफी सारे वुडन टेबल एवं चेयर्स लगे हुए हैं।

यहां पर बहोत सारे व्यक्ति घूमते नजर आ रहे हैं।

दूर में बड़ी बड़ी दो वाइट बिल्डिंगे दिख रही हैं।

बैंक के बगल में एक बोड लगा है जिसपे मैथमेटिक्स क्लासेस लिखा है।

सामने में दो वाइट कलर के वॉल फैन लगे हुए दिख रहे हैं।

फोटो की फ्रंट में एक ग्रे कलर का सोफा रखा है।

यहां बहोत सारे लोग वज्रासन में बैठे दिख रहे हैं।

ऊपर एक ए_सी लगा भी दिख रहा हैं।

कंप्यूटर टेबल एवम् चेयर्स लगाए गए है।

सभी टेबल्स के ऊपर नंबरिंग दी गई है।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

तथा सामने दीवार पर डांस नेशन लिखा दिख रहा है।

इस पुल के नीचे पानी भी दिख रही है।

यह पिक्चर एक स्कूल कॉरिडोर का है।

बाउंड्री के आस-पास बड़े-बड़े पेड़ भी लगे हुए हैं।

एक बोर्ड पर गोल्ड लोन तथा दूसरे पे सिंडिकेट बैंक लिखा दिख रहा है।

सामने में छोले भटूरे लिखे दिख रहे हैं।

जिन्हें ब्लैक एंड व्हाइट पेंट किया गया है।

यहां पर तीन व्यक्ति बैठे दिख रहे हैं।

बाहर में भी कुछ चेयर्स एवं टेबल लगे हुए हैं।

इस तस्वीर में सामने एक स्टॉल दिखाई दे रही है।

जिसके ऊपर आर_के कॉफी स्टॉल ज्ञान बाबू चौक मेन रोड मोतिहारी लिखा है।

सामने दो शीशे के जार रखे गए हैं।

सामने रोड पर एक व्यक्ति एवं एक बच्चा दिख रहा है।

इस तस्वीर में सामने एक बिल्डिंग दिख रही है जिसके ऊपर लाइट से कूल ब्रेक लिखा गया है।

नीचे की ओर एक करकट से बनी छत दिख रही है।

तस्वीर में सामने एक एरोप्लेन दिख रहा है।

यहां पर एक पूल दिखाई दे रही है।